ढेर सारे कपड़े हैं जैसे में कम्बल हैं स्वेटर हैं जैकेट हैं थैलें हैं--

बहुत सारे लोग हैं जो अपने सामान को जरूरत के हिसाब से खरीद रहे हैं।

बहुत सारे सामान रखे हुए जिम करने वाले और उनमें कुछ लोग अंदर हैं जो जिम कर रहे हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं अपना--

घूम रहे हैं उसके अगल बगल बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

एक अच्छा सा बड़ा सा कैंपस है और कैंपस के चारों ओर--

और वो पेड़-पौधे बहुत ही हरे-भरे लग रहे हैं।

लाइट लगा हुआ है जो कि लाइट अभी बंद है।

टेबल है और टेबल पे ढेर सारी मछली मरी हुई पड़ी हुई हैं।

जगह पे पेड़-पौधे लगे हुए हैं और घर का कलर उजला सा पेंटिंग किया हुआ है।

जेंट्स एंड लेडीज दोनों का मुझे ये मॉल के अंदर दिखाई दे रहे हैं।

बहुत सारे कुछ लोग स्टूडेंट बैठे हुए हैं टेबल पे बैठे हुए हैं।

बोर्ड है जो सामने मुझे दिखाई दे रहा है और एक बोतल है बोतल में पानी--

ऑफिस में चेयर लगे हुए हैं टेबल लगे हुए हैं और एक हमारे देश भारत का झंडा लगा हुआ है जो कि बहुत ही प्यारा मुझे दृश्य दिखाई--

दे रहा है और उस बिल्डिंग के अंदर चेयर पे कोई--

प्लास्टिक लगा हुआ है और फिर रेड का लगा हुआ है और एक बहुत--

एक घर के अंदर चार गिटार रखे हुए हैं जो चारों गिटार हैं वो बहुत ही खूबसूरत दिखने में लग रहे हैं।

उसके बाद उसमें छोटे-छोटे घास है जो मेरे को देखने को नजर आ रहा है बहुत अच्छा लग रहा है।

और उसमें एक बड़ा सा जनरेटर लगा हुआ है उसमें बहुत सारे --

हर बाइक साइकल रहे हुए हैं कुछ लोग आ भी जा भी रहे हैं।

एक बहुत सा प्यारा एंबुलेंस है और एंबुलेंस दो कलर के हैं ऑरेंज और व्हाइट कलर के हैं।